यहां पर बहुत सारे वर्कर्स खड़े हुए जिन्होंने ब्लू और वाइट कलर के--

आगी ब बहुत बड़ा रूम बनावा है आ जहां ऊपर साइड में कांच जैसा कुछ बनावा है वो सब कुछ मीटिंग में --

ये खुला आसमान है नीचे बहुत सारे ग्रीन कलर के अ पौधे उगे हुए हैं कि जोकि ग्रीन और यलो कलर में हैं --

ये एक पेट्रोल पम्प है इंडियन आयल वाला जहा पर बहोत सारे मतलब एक--

यह पटना का राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान है जहां पर बहुत सारी पब्लिक जमा है यहां पर कुछ महिला भी कुछ पुरुष भी है।

एक ग्लास से बना हुआ एक महेल है जोकि स्टील के गिलास से बना हुआ है। यहां नीचे पांच से फिर चार --

ये एक फैक्ट्री है फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मर्जी मशीन मौजूद है यहां पर एक भैया खड़े हुए जिस फैक्ट्री में काम कर रहे--

ये एक होटल है जो की बहुत ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है क्रीम कलर का इसमें बहुत सारे तिकोने तिकोना टाइप के छोटे छोटे डिजाइन दे रखी हैं।

ये खुला आसमान है ये पहाड़ी वाला इलाका है यहां पर बहुत सारे फ़त्थर मौजूद है और आसपास--

जो एक रोड जैसी दिखाई दे रही चारों तरफ आगे पानी और पीछे पीछे घास दिखाई दे रही है और एक रास्ता भी हैं दूर की तरफ से दिखने--

और उपर से लाइटो के सेप में रस्ता बना रखा है जो की रात का समय है बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।

टेबल एक डॉक्टर की टेबल यहां पर शायद में डस्टबिन भी है और कुछ मशीने भी रखी हुई है।

ये मछली की दुकान है यहां पर बहुत सारी मछलियां मौजूद हैं।

ओ बिजी गोल्ड अह सिल्वर कलर का बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ गाड़ी वगैरह भी मौजूद नहीं है यहां पर बहुत ज्यादा पानी है।

यह एक बड़ी शॉप है जो की फ्लावर से सजी हुई है यहां पर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगे--

आसपास खिडकी जैसा बी दिख रखा हैं एक कमरा हैं पर्पल कलर का और आस पास लकडी का काम करावा हैं जो की बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हैं --